सफेद कलर की कार खड़ी हुई--

सामने कृष्ण जी की प्रतिमा नजर आ रही है।

दीवाल का कलर ब्राउन है लकड़ी के टेबल पर रखा हुआ है।

पंडाल से सजा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

पीछे दीवाल का कलर व्हाइट है।

सामने एक ऑरेंज कलर के बोर्ड के ऊपर इंडियन ऑयल लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

ऊपर पहाड़ दिखाई पड़ रहा है।

दीवाल का कलर सफेद है।

अंदर ब्लैक कलर की कुर्सियां रखी हुई नजर आ रही है।

घड़ी लटकी हुई दिखाई पड़ रही है। दीवाल का कलर सफेद है।

रेड कलर का बैठने का हैं।

सामने एक बेड पर आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

नीचे मैट का कलर ब्राउन है।